और पीछे पिज़्ज़ा हट है और यहाँ पे लोग हैं। कुछ लोग खड़े है।

ये एक रेस्ट्रोन है जहाँ पे बोर्ड पे लिखा है मटन बर्गर करके।

और कार के चारों दरवाज़े खुले हुए है और कार के पास एक लड़का खड़ा है।

और यहाँ रेस्तराउंट के बाहर लोग खड़े हैं। कुछ लोग साइकिल पे हैं। कुछ लोग बाइक में हैं। कुछ लोग बैठे है बस एक्टिवा पे ।

ये सैलून है जिसका नाम है मैंजिकल सीज़र यूनिसेक्स सैलून है।

और तालाब के पास कुछ मिट्टी है जो ब्राउन कलर की है और लाइट ग्रीन कलर की दिख रही है।